देख सकते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो बैठ कर --

यहाँ एक पार्क है जिसका नाम है म बाल वाटिका।

ते हैं एक पहाड़ है। पहाड़ से पानी गिर रहें हैं। काले रंग के पत्थरों के बीच से वाटरफॉल हो रहें हैं।

कुछ एक है जो चश्मे पहन कर एक पीछे टोपी पहन के खड़े हैं और हाथों में कागज ले कर कुछ --

एक शॉप है वहाँ पे बहुत सारे --

पेट्रोल भरवाने के लिए एक आदमी है जो बैग टाँगे हुए हैं काले रंग की |